यह योगा क्लास हो रहा है जिस में बहोत सारे अ लोग जा कर योगा कर रहे है और बहोत अच्छी तस्बीर खींची हुई है जिसमें सब लोग बहोत तरह अच्छे से योगा कर रहे है जिसमे जिसमे बहोत अच्छा तस्बीर घिची हुई है |